यह बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड पूरे पंडाल से घिरा हुआ है पंडाल का कलर --

जो रैक ऑरेंज ग्रीन कलर के यहां पे बहोत सारे टेबल कुर्सियां लगे हुए यहां पे कुछ आदमी बैठे भी हुए हैं।

दुल्हन ने लाल कलर की लहंगा पहनी हुई और दूल्हे ने शेरवानी पहना है।

उसके बगल में एक कार में बैठा है जो ग्रीन कलर का शर्ट पहेना हुआ है।

यह एक मिठाई की शॉप है यहां पे बहोत अलग अलग कलर की मिठाई है जैसे ब्लैक व्हाइट --

फूल हैं बहुत सारे पेड़ भी हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल पड़े हुए है जैसे पिंक कलर की वाइट कलर की फूल है येलो कलर की भी--